यहां लाईटरिन बन रहा है रखा हुआ है।

लगा हुआ धरा हुआ दिख रहा है।

ये आसमान नीला दिख रहा है पार्क दिख रहा है एक टेबुल भी लगा दिया होटल है यहां पे होटल के बगल में बहुत सारे टे कुर्सी उर्सी रखा हुआ है और यहां पे कार भी आया है।

गेट खुला हुआ दिख रहा है यहां पे एक भी आदमी नही दिख रहा--

गेट लगा हुआ नही है खुला हुआ है मन्दिर के उपर एक--

एक अंकल जा रहे बैग ले के यहां पर पीछे--

मकान है जो छत पे खड़े हो पलस्तर किया गया है।

कुर्सी पेंट किया गया है जो पीला कलर की--

झुमका उमका लटकाया हुआ दिख रहा है साइड में ऊपर से--

यहां पर बैड दिख रहा है जो इमरजेंसी सेवा के लिए इसको हम बैड है यहां पर डॉक्टर ओक्टर नहीं दिख रहे --

यहां पे शंकर जी का फ़ोटो है यहां पार्वती जी का फोटो है।